नेता या मंत्री आया है और लोग उसके पास खड़े हैं। ये बहोत ही भीड़ में खड़े हैं।

बहोत बड़े समुदाय को देख रहा हूँ जिसमें किसी अतिथि का सत्कार हो रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं।

वाले यूनिफार्म में खड़े है और ऐसा लग रहा यहाँ पर किसी का वेलकम हो रहा है।

बड़े-बड़े पेड़ हैं और साथ में किनारो पे रेलिंग बनी हुई हैं।